बहुत ही हरा है पेड़ पत्ता पौधा बहुत सारा पत्थर है बहुत हीं बड़ा-बड़ा पत्थर है बहुत ही खूबसूरत जंगल है बहुत हीं बेहतरीन जंगल है।

अंदर एक फ्रिज है और बहुत ही बेहतरीन सा घर है छोटा सा बहुत ही मस्त है।

इस बैंक से लोगो को पैसा निकासित करने में बहुत ही सुविधा होती है |

यह एक बहोत ही अच्छा केक "बनाया गया है इस केक में वाइट और रेड को मिलाके बनाया गया है।

फूल लेने के लिए बहुत सस्ते दाम में फूल मिलता है बहुत अच्छा-अच्छा क्वालिटी का फूल मिलता --

बहुत ही सारे लोग आये हैं बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं यहाँ पे मेला में बहुत हीं अच्छा होता है।

यह एक पार्क है बहुत ही अच्छा पार्क है यहां पे दूर-दूर से लोग आते है घूमने के लिए एन्जॉय करने के लिए बहुत ही खूबसूरत पार्क है बहुत ही पेड़ लगाया गया है।

बहुत ही अच्छा क्वालटी का पेट मिलता है बहुत ही सस्ते दाम में पेट्रोल मिलता है बाइक में पेट्रोल डलवाता है ऑटो में बस में।

यह एक डांस क्लास है बहुत ही अच्छा डांस क्लास है यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते है डांसिंग सिखने के लिए बहुत ही अच्छा डांस क्लास है।